उसका पूरा शरीर का पंखी है दो पैर है ये उड़ नही रहा है बैठा हुआ है और और कुछ-कुछ इधर दिख रहा है है।